मेरेको एक नदी दिख रही है इसके आगे एक बहोत ही बड़ा अ पहाड़ है और इसे नदी पर एक डैम बना हुआ है।

और एक पुल बना हुआ है इस पर मझे एक बिजली का खम्भा भी दिख रहा है और इसके दोनों तरफ बहोत ही सुंदर--

मेरे आगे एक गेट हैनीले कलर का जिसपे मनेरी बांध है और इसके पीछे बहोत ही ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं।